और बहुत सारा पेड़ पौधा भी है आसमान में वाइट कलर के बादल दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर बहुत सारा आदमीन है दुकान के बाहर बहुत सारा बाइक लगा हुआ है और गाड़ी भी लगा हुआ है।

घर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड में जैन श्री लिखा हुआ है।

आसमान में वाइट कलर के बादल दिखाई दे रहा है सभी को व्हाइट कलर का कपड़ा पहने हैं।

यह एक दुकान है दुकान के बाहर लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

और बिल्डिंग के ऊपर चघने वाला सीढ़ी भी बनाया हुआ है घर के बाहर--

बिल्डिंग के अंदर एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है और बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यह एक शोरूम है शोरूम में बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है।

घर में परदा लगाया हुआ है घर में एक बेग रखा हुआ है।

यह एक दुकान है दुकान में काउंटर लगाया हुआ है काउंटर में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

घर के ऊपर एक बोड लगाया हुआ है।

दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है बोर्ड पर लिंक इंडिया इन्फोटेक लिखा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा घर है घर में बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ है।

यह एक रोड है रोड में गाड़ी लगाया हुआ है गाड़ी का कलर ब्लू रंग का है।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

यहां एक बहुत बड़ा स्कूल है स्कूल के बाहर एक बहुत बड़ा फील्ड है फील्ड में बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ है कुर्सी का कलर --